इस फोटो में बहोत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

उस ठेले में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पड़े हुए हैं।

और बहोत सारे टोकरियां पड़ी हुई है उसमें फ्रूट पड़े हुए हैं।